चेयर लगी है और चेयर के पास एक बच्चा--

इस फोटो में मुझे पहाड़ दिखाई दे रही है जो की पहाड़ के बीच में एक रोड है।

बैंक दिखाई दे रही है जो की बैंक का नाम है--

और एक बच्चा स्टूल पकड़ के बैठा है।

जोकि कमरे में एक बेड लगी है और बेड के बगल में बिजली बोर्ड है।

जोकि पांचों लड़कियों के पीछे--

शंकर भगवान की बड़ी जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे कपड़े की मॉल दिखाई दे रही है।

जोकि पहाड़ में बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं और पहाड़ के बीच बीच में पानी भी है।

जोकि रंग बिरंगे चूड़ी है और कड़े है और टेडी बियर और बच्चों के डॉल भी है।

दोनों डॉक्टर कुत्ते की ड्रेसिंग कर रहे हैं।

ड्यू के बॉटल है और बहुत सारे पानी की भी बॉटल है।

टीने की छत दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे रोड दिखाई दे रही है।